यहां मुझे बहुत सारा इंसान दिखाई दे रहा है।

दुकान के सेलिंग और दीवारों पर सफेद रंग लगाया हुआ है।

अंदर बहुत सारा सेल्फस से जिस पर अलग अलग सामान रखा हुआ है।

सामने में मुझे एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

फर्स्ट फ्लोर पर मुझे पेमॉरस स्किन क्लिनिक लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

सामने में मुझे एक बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है जोकि सफेद रंग का है।

सारे लोग चेयर पर बैठे के हैं और एक आदमी खड़ा है।

यहां आई_टेक लिखा हुआ है और एडीडास लिखा हुआ है भी दिखाई दे रहा है।

इस काट के दो बड़ा बड़ा चक्का दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग में पीला रंग लगाया हुआ है।

मुझे अंदर में एक कंप्यूटर भी नजर आ रहा है।

यह तस्वीर एक ए_टी_एम जगह से लिया हुआ है।

मुझे अंदर में ए_टी_एम मशीन भी दिखाई दे रहा है जो कि काला रंग का है।

गेट पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यूपिआ पापंपारें अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ है।

साइड पर एक बूढ़ी अम्मा भी बैठा हुआ है।

मुझे यहां बिल्डिंग के फेंसिंग भी दिखाई दे रहा है जोकि सफेद रंग का है।

और थोड़ी ही दूर में मुझे एक औरत भी दिखाई दे रहा है।

ऊपर में लाइटस भी लगाया हुआ है।

सामने में मुझे कुछ छोटे छोटे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहा है।

तस्वीर मस्जिद के अंदर से लिया हुआ है।

इस रूम की सीलिंग पर सफेद रंग लगाया हुआ है।